ये होटल है। अगल बगल कितनी अच्छा सुन्दरता है। बढ़िया पेंट हुआ है। बहुत बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है।

इसको बहोत अच्छी तरह से सजाया गया है। यहां पा आगे आप बैठकर खाना-ओना भी खा सकते हैं। इस होटल को काफी अच्छा बनाया गया है। इसमें सुंदरता भी बहोत अच्छी तरह से बढ़ाई गई है।

इसमें जो है। बोहोत इसको मजा आने वाला है।

यहाँ पर लोग फोटो ओटो भी खिचाने आते हैं जैसे ये भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर।